इस फोटो में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

इस फोटो में पांच कार दिख रही हैं।

जिस पे लिखा हुआ है इंडियन ऑयल मुफ़्त हवा।

इसपे लिखा हुआ है सुधा पालोर ।

इस फोटो में बहुत सारे चॉकलेट दिख रही हैं।

इस फोटो में एक पेट्रोल पंप है।

जीसमें बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

आलू भी रखा हुआ है। गोभी भी रखी हुई है।

बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

बहुत सारी साइकल रखी हुई हैं।

इसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

जिस पे लिखा हुआ है फ्रोजन जंशन ।

इस फोटो में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

बहोत सारे खम्भे भी लगें हुए हैं।

इस फोटो में एक बड़ी सी हवेली दिख रही है।

आइसक्रीम के ठेले भी दिख रहे है।

ऑरेंज ब्लू कलर का है।

नीचे पेट्रोल भरने वाली मशीन रखी हुई है।

बहोत बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

कटोरा भी रखा हुआ है ब्लैक कलर का।

फोटो में एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है।